छोटे कप हैं। बड़े कप हैं। बीस साइज के कप है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के कप हैं।

जहां पे औरते हैं मर्दे है लड़के लड़की बच्चे सब हैं जो पूजा कर रहे हैं।